बीबा का उसके पास में बहुत सारी सीढ़ियां हैं एक्सेलरेटर सीढ़ी भी है।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं यह दिन का समय है यहां पर रोड पर दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर शटर का कलर पर्पल है यहाँ पर तीन आदमी खड़े हैं उसमें से एक आदमी का कलर ऑरेंज --

भारत का झंडा बना हुआ है और सफेद कलर से लिखा गया हैं इंडियन पीकॉक मोर--